स्कूल के होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं पीछे ब्लैक बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर के भीतर हमें कुछ अलग-अलग प्रकार के डिब्बे दिखाई दे रहें हैं।

दो डिब्बों में अलग-अलग प्रकार तरल हैं और कुछ स्टैंड दिखाई दे रहे हैं कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

और जल में सभी पेड़ पोधों की परछाइयाँ भी दिखाई दे रही हैं यह देखना में बहुत सुंदर लग रही है।

बदन में कुछ किताबें भी दिखाई दे रही है।

सामने एक बहोत बड़ा पंडाल दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे अलग-अलग आकृतियां बनी हुई है।

यह एक तस्वीर है इस तस्वीर में तीन बुद्धा की मूर्तिया जी बनी हुई दिखाई दे रहीं है।

जिसमें कुछ दरवाजे हैं और खिड़कियाँ बनी हुई है जो सीशे की बनी हुई है।

सामने एक सड़क दिखाई दे रही है जिसके आसपास बहोत {बहुत) सारे हरे भरे घास उगे हुए हैं। कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है कुछ लोग हैं।}

जिस पर कुछ लोग खड़े हैं और एक सीढ़ी दिखाई दे रही है और कुछ दीवालस दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें मैच चल रही है क्रिकेट मैच ।

यहां एक तस्वीर है इस तस्वीर में सीमेंट को मिक्स करने वाली सीमेंट बालू --

और मैदान में बहोत सारे हरे भरे घास पेड़ पौधे और कुछ खाली जगहे भी है गड्ढे।

यह एक तस्वीर है इस तस्वीर में बहुत बड़ा सा एक तीन माला मकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे खिड़कियाँ लगी हुई हैं।

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक म्यूजियम दिखाया गया है।

यहां सब एक कंकाल से लगे हुए हैं।

एक पंखा दिखाई दे रहा है तीन चेयर दिखाई दे रहें हैं एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यह एक तस्वीर है इस तस्वीर में चार-चार लाइफ मकान दिख रहें हैं।